के साथ में एक व्यक्ति है जोकि एलीफेंट को साथ में ले जा रहा है।

इस दृश्य में हमें स्टेशन दिख रहा है।

मिट्टी दिख रही है और पीछे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

बहुत सारे पंखे दिख रहे हैं और चम्मच दिख रहे हैं और मिक्सर मशीन दिखी है।

पिलर दिख रहे हैं और पीला पीला कलर दिख रहा है दो विंडोज हैं।

दो रूम्स है और बाहर्ज बाहर और अंदर जाने का एक गेट लग रहा है बड़ा सा।

तीन हिरन दिख रहे हैं जो की एक हिरन खड़ा हुआ है और एक नीचे कुछ पड़े हुए हैं।

इसमें जो कुर्सियां हैं फाइ प्लास्टिक की है और दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।